एक सामान साइकिल पे रखा हुआ है और एक वो नीचे पे सामान रखा हुआ है ।

अच्छा कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे दीवाल पर --

यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है | देखने में बहुत ही सुन्दर नजारा लग रहा है। आसमान नीला कलर का दिखाई दे रहा है | हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं दूर से देखने पर।

पिक्चर है। अ लग रहा है कि यह कोई बुक स्टोर है। बोहोत सारी किताबे अलग-अलग तरह की अलग-अलग रंग-बेरंगी --

एक ईटा का दीवाल दिख रहा है जो की ऑरेंज कलर का रंगा हुआ है बहुत जालीनुमा ---

हुए हैं न्यू न्यू | यहाँ पर बहुत अलग-अलग तरीके के कपड़े हैं अलग-अलग रंग के पिंक वाइट ब्लू --

दिखाई दे रहा है और बहुत सारे तार भी लगा है उसमे --

सड़क के पीछे एक एस.बी.ई का बैंक है और बोहोत बिल्डिंगे दिखाई दे रही है पीछे से।

और एक सामने पेड़ दिखाई दे रहा है छोटा सा --

वाइट कलर का शर्ट और पेंट पहने हुए है अच्छा लग रहा है देखने में --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

और दो साइकिले दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक ऑटो दिखाई दे रही है और एक --

बहुत बड़ा हरा कलर का पेड़ दिखाई दे रहा और --